है यहाँ पर जो फर्श है वो ग्रे कलर की है आस - पास हरे पेड़ - पौधे आसमान यहाँ पर नीला रंग का है।

जैसा की में देख पा रही हूँ यहाँ कुछ बच्चे बैठे जमींन पर बैठे हुए है जहाँ जमीन --

जैसा की में देख पा रही हु ये एक--

जैसा की मैं देख पा रही हु ये एक होटल है जहाँ पर --

यहाँ पर न दीवार पर भी सफेद रंग है यहाँ एक अलमारी है जोकि ग्रे कलर की है यहाँ लाल कलर की कुर्सियाँ रखी हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक बगीचा है जहाँ पर हरे कलर की पत्तिया लगी हुई है यहाँ की फर्श ग्रे कलर की है आसमान --

एक लोग ने टी शर्ट पहनी वाइट कलर की यहाँ की जो फर्श है वो भूरे रंग की है आसपास जो--

और काला है यहाँ पर फूल है जो की भूरे रंग का है यहाँ पर एक सफेद रंग की दिवार है यहाँ पर आसमान सफेद आस - पास हरे पेड़ पौधे --

यहाँ पर एक काले रंग की जाली है हरे पेड़ - पौधे है आसमान बैगनी और काला है यहाँ का जो फर्श है वो ग्रे रंग की है।

कुछ लोग छत पे खड़े है यहाँ पे जो छत है वो भूरे रंग की है आस पास हरे भरे पेड़ पौधे है और--

एक कालीन बिछी है यहाँ की जो फर्श है सफेद रंग की है यहाँ कुर्सियां सफेद रंग की है यहाँ कुछ लोग बैठे हुए है एक लोग ने नीले कलर की शर्ट पहनी एक ने सफेद रंग की --

ये पेड़-पौधे लगी हैं यहाँ की जो फर्स हरी हैं यहाँ लाल रंग के फूल लगे हुए हैं आसपास हरे पेड़-पौधे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये एक गंगा बुक डिपो --